फहराया जाता है । या एवं पंद्रह अगस्त पर भी हम लोग इसे फहराते है ।

घास-फूस बिछे है। उसके पीछे दो-तीन पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रही है ।

ये पूल बहुत बड़ी है।

एक चली जा रही है।

यहाँ लीची बहुत सारे यहाँ पर हैं ।

बहुत ही गाड़िया खड़ी है।

इस फंक्शन में तीन लड़के --

पेड़-पौधे लगे हुए हैं ।

बहुत आदमी भी बैठे हुए हैं।